यहाँ यह काफ़ी मडा है और टेबल पे और प्लेट भी है और यहां सोफा भी लगा है और यहाँ एक ठो आदमी चेयर में बैठा हैं।

उधर पे एक ठो अउ का का बनात रखा है ड्रॉइंग अउ एक ठो यहाँ पे गीला कागज को मोड़ रहा है।